कुछ मटर और हरी मिर्चियाँ भी दिखाई दे रही है एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

प्लेट है जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है और व्यक्ति ने--